यहाँ पर हमको बहोत सारे ट्रक खड़े हुए दिखाई दे रहे है ये कलर लगभग सभी शेम है इनका नीचे --

यहां पर हमको विशाखा डेयरी करके यहां पर बेनर लगा हुआ दिखाई दे रहा है और यहां बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए है।